जो दो इंसान खड़े हैं उन्होंने ब्लू कलर का टी-शर्ट शर्ट पहना हुआ है कार को ऊपर है कार का जो सामने का गेट है वो खुला हुआ है लाइट दिख रही है।

ये एक मार्केट है। जहाँ पे अ एक जुलुस निकाला जा रहा है। उसमे गाड़ियां अ भी है। गाड़ी पर निकाला जा रहा है। जिसमें दो हॉर्स बने हुए हैं।